और होटल के बाहर की तरफ आप देख रहे हैं इधर गमले है गमले में छोटे छोटे प्लांट लगे हुए है जिन्हे अ श्रब्स आप कह सकते हैं |

इन्वर्टर भी है साथ में इधर जो भी बन्दे आते हैं थोडा अ ट्रेड मिल पर रनिंग वगैरह करते हैं।

रोड पर जो आप व्यू देख रहे हैं देखिये कितने सारे मिनी मेट्रो इधर हैं सामने --

और केक जो है हर किसी मूमेंट को एक अच्छा सा एंजोयमेंट बना देता है सेलिब्रेट करने के लिए।

इसमें जो बन्दे वर्क करते हैं वो हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं।

एसबीआई बैंक को आप इधर देख सकते हैं औरआप देख सकते हैं इधर इंश्योरेंस का भी ऊपर जो --

और इसी बस स्टेंड के सामने आप देख रहें हैं कि आपको इक लड़का इधर देखने के लिए मिल रहा है और दो बन्दे सामने की तरफ इधर खड़े हैं।